और यहाँ बहोत सारी लकड़ियां भी रखी हुई हैं।

और पीछे बहुत सारे झाड़ियां भी खड़ी हुई है।

जिस जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसी के साइड में एक पेड़ भी खड़ा है।

आसमान का कलर नीला दिख रहा है और उसमें बहुत सारे ब्लर भी दिख रहे हैं।

औरत एक कुर्सी भी रखी हुई दिखाई दे रही है अरे ट्यूबलाइट भी जल रही है।

सामने व्हाइट कलर की नीचे ब्लैक ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई हैं औ --

हरे लाइट भी जल रही हैं।

और बहुत सारे कॉपी और किताबें भी रखी हुई हैं और बहुत सारे इसमें अंदर पिलर भी हैं और पीछे से एक लाइट भी दिखाई दे रही है।

यह एक बेडरूम दिखाई दे रहा है जिसमें एक बेड पड़ा हुआ है।

और आसमान में कुछ बादल से छाए हुए ऐसे लग रहा है जैसे पीछे --

उसने माक्स भी लगा रखा है और पीछे रेड कलर की पेटी भी पड़ी हुई है।

एक पोस्टर भी बना हुआ है ऐन अंदर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं जो की बाल कटवाने का इंतजार कर रहे हैं।

यहां सामने ट्रैवल वैन खड़ी है जिस पे एक परफेक्ट लिखा हुआ है।

और साइड में एक किनारा है और नदी में पानी चल रहा है आसमान का रंग नीला है।

सामने एक मशीनरी की दुकान हैं जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है ग्लोब मशीनरी स्टोर केसरे वाली।

पीछे कुछ सजावट लगी हुई है और ऊपर व्हाइट कलर की बहोत सारी लाइटें भी जल रही है।

सामने एक बिजली का खंबा भी दिखाई दे रहा है।

यह एक चाट कार्नर दुकान है।

दो तीन आदमी उनके आदमी गाड़ी पे खड़ा है और पीछे एक आदमी दुकान के अंदर बैठा हुआ है।